बहुत बडा है और नीचे एक कमरा भी बनाया हुआ है और पेड़े के नीचे एक बाईक --

इसका कार्य अभी चल रहा है इसके गेट के पास में एक छोटी सी दीवाल --

पर्वतीय बुक सैंटर के नाम से खुले हुए हैं यहां पर कम्पटीशन और स्कूल की दुकान स्कूल की --